देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।

यह एक नदी है और एक नाव भी है और हंस भी है दूर-दूर में बहुत सारा घर है देकने में बहुत ही अच्छा लगता है।

और एक बहुत बड़ा मार्किट है और एक बहुत बड़ा पूल भी है और बहुत सारे बस भी है और बहुत सारे घर भी है और बहुत सारे आदमी भी है बहुत सारे टोटो भी है और एक --

और एक बोर्ड भी है और बहोत सारे पेड़ भी हैं देखने में बहोत ही अच्छा --